यह एक बस स्टेशन है जहां पर एक बस हैं और बैठने के लिए बहुत सारा टेबल भी लगा हुआ हैं।

और यहां पर रेड कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ है।

दो पेड़ भी झुका हुआ है।

इसमें कपड़ा टंगा हुआ है यहां पर कपड़ा में फोकस कर रही है बहुत सारी लाइट --

यह एक होटल का दृश्य है जहां पर बहुत सारा कोडियम बनाया हुआ है जो की सनमाइका से बनाया गया है।

और यहां पर टेबल और चेयर भी लगी हुई है बहुत सारी।

यह फेलिसिटा सी_एस_बी है जहां पर अंदर जाने के लिए एक दरवाजा--

और बैकग्राउंड में सजाया हुआ है घड़ी भी लगा हुआ है स्टार बनाया हुआ है पर्दा लगा हुआ है।

यह एक तिरुपति ऑडियो सर्विस है।

यहां पर सामने बहुत सारे मिट्टी भी है।

और एक आदमी पुशअप कर रहा है।

जो कि येलो कलर का टी शर्ट पहना है।

एक चार्ट भी है जिसमें आफ्टर नाइन स्टार चॉकलेट मोका ब्राउनी लिखा हुआ है एक जग भी है जो कि स्टील का है।

एच_पी भी लिखा हुआ है और बहुत सारे गमले लगाए हुए हैं।

यह एक डक है जो की ब्लैक कलर की है।

टेबल पर न्यूज पर पेपर रखी हुई है।

और शटर ब्राउन कलर का है।

यहां पर टोटल सात औरते खड़ी है।

यह हैप डेली आईक्रीम है।

यहां पर अरुण आइसक्रीम दो मशीन रखी हुई है।

और यहां पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

एक वेटर है जो की ब्लैक कलर का पहना है टी शर्ट ।

एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें भारत लाइब्रेरी लिखा हुआ है।

एक लड़का है जो कि बैग टांगा हुआ है आगे की ओर जा रहा है।